नीचे काफी सारा रोड है और आस-पास ऊपर आसमान है जो कि सफेद रंग का है कुछ सफ़ेद कलर का दिख रहा है जिसमें काफी सारे फूल बने हुए दिख रहे हैं।

रोड है जिसमें काफी सारे यहाँ पर काफी सारे मकान बने हैं जो की सफ़ेद हरे रंग के हैं और कुछ हरे कलर के पत्ते हैं।

और सामने ऊपर लाइटें लगी है सफेद रंग की और एक कैमरा लगा हुआ दिख रहा है और आज सामने एक काँच लगा हुआ है।

आस-पास काफी सारे लोग खड़े दिख रहे है एक कत्थी कलर का दरवाजा है और ऊपर एक आसमान है जो की फिरोजी कलर का दिख रहा है एक बच्चे खड़े हुए दिख रहे है कुछ लोग खड़े हुए है और सामने काफी सारी दुकाने दिख रही है।

आस-पास काफी सारे पेड़ लगे हैं जिसमे नीचे कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं कुछ पत्ते लगे हुए हैं --

सारे यहाँ पे मैदान है यहाँ पे काफी सारे बच्चे खड़े है जो कि काले और सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं।